और पंखा लगा हुआ है नीचे चटाई लगा हुआ है और एक बास का खम्बा है और बिजली का तार है।

और ऊपर नीला आसमान है आस-पास में हरा-हरा पेर है।

यह एक स्टेशन है। बहुत सारी यात्री सब है।

यह एक खेत है खेत में हरा-भरा पेड़-पौधे हैं आस-पास में आम-उम का पेड़ है आस-पास में छो घर दिखाई दे रहा है।

एक पीला कुर्सी पर बैठा हुआ है पानी का बोतल है टेबुल है मछ्ली है म और कुछ बर्फ-वर्फ है।

और एक कुर्सी है कुछ बच्चे लोग है।